यहाँ एक कपड़ा का दुकान है बहुत सारा साड़ियां है यहां पे टंगा हुआ सलवार सूट भी है एक लड़के का फोटो है उसमे उनको उसको रातभर पुतले को फ्राक पहनाया हुआ है बहुत लोग आते जाते है खरीदने के लिए या वहां पर स्टूल रखा हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद।

और उजला रंग के है बहुत ही और हरा है बहुत से आदमी आते है पूजा करने के लिए देखने में अच्छा दृश्य लग रहा है ।